यहां पर सीडियां नजर आ रही है एक बेड लगा हुआ है।

जिसमें से एक बाइक पर सवार है तथा रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एक व्यक्ति व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है।